बने हुए है रोड बना हुआ है बहोत सारे बोट लगे हुए है एक जगह पे--

दुकान के सामने एक बाइक खड़ी हैं पैशन प्रो का--

स्प्राइट है राईट साइड में बहोत सारे चिप्स रखे हुए कुरकुरे रखे हुए है लेस रखा हुआ है।

ये के एक पेड़ है जिसमें बोहोत सारे पत्ते हैं।

एक सब्जी मंडी का है जिसमें बहोत सारी सब्जी रखी हुए है टमाटर रखे हुए है भिन्डी है।

जिसमें तीन गेट है एंड बहुत सारे गेट है ऊपर की ओर एक छज्जा है बनाया गया है ऊपर की जो छत है वो टिन की छत है।

बिट लगे हुए है एंड लेफ्ट साइड बल्ब लगे बहुत सारे बल्ब लगे है राईट साइड में बल्ब है।

ये एक दूकान है जिसमें होलसेल लगा हुआ है हर एक माल पंद्रह रुपे में पंद्रह रुपे का बोर्ड टंगा हुआ है दो ठो--

बहोत सारे औरते है यहाँ नीचे बहोत सारी औरत लोगो क अ सामान है हेयरबैंड है बहोत सारे --

पेट्रोल पंप के एंड ऊपर में एचपी लिखा हुआ है राईट साइड में एक पोल है लाइट पोल है एंड एक पोल है जिसमें एचपी लिखा हुआ है ।

राईट साइड में बहोत सारे आदमी है जो ब्लू रंग का शर्ट पहने हुए है उनके पीछे एक--

घर है एंड बहोत सारे तार है।

एक गमछा रखा हुआ है और राइट साइड में एक आदमी --

यह बहुत बड़ा बिल्डिंग है जिसमें एक आर्मी भी खड़ा हुआ लेफ्ट साइड एक आदमी आर्मी है।

जैसे सामने करेंगे गेट है ले राइट साइड का छोटा सा खिड़की है।

एक घर दुकान है जिसमें तू करके तीन बोर्ड लगे हुए हैं।

एक्टर और एक साइकिल रखा हुआ है के जंजीर का गेट है ब्लू रंग का--

तोते है ऊपर एगो लाइट लगा हुआ है राइट साइड में एगो सीढ़ी है सीढ़ी के ऊपर --

फोटो है अटल बिहारी बाजपाई का फोटो हैं।

एण्ड हार्दिक शुभकामनाए लिखा हुआ हैं लेफ्ट साइड की ओर कोने मे--

बहोत सारा कांच बीजेज है झूला झूलने के लिए राइट साइड मे एक पोल हैं लाइट का पोल हैं।

एक और एक सामने टेबल दो-दो टेबल रखे हुए प्लास्टिक के काउंटर है जो वाइट कलर का काउंटर है।

ये एक एल जी का शोरूम है जिसमें बहुत सारे एल जी का सामान रखे हुए हैं।

घरों में आगे की ओर बहुत बड़ा -बड़ा पेड़ है घर के अंदर --

रेड कलर का बिल्डिंग हैं बहुत सारी खिड़कियां है लाइट

एक लड़की सिर्फ सकल नजर आ रहा है राइट साइड में--

ये एक सलोन है। सलोन का दुकान है जिसमें ए. वन. एन.जी.बी

बाइक लगा हुआ है सालों में दो बच्चे बैठे है और दो कुर्सी है।

ये एक नदी है जिसमें एक आदमी नौका बैठा हुआ है ऊपर की और एक घर है।

एक लाइब्रेरी है जिसमें आगे कर एक आदमी है।

में कलरफूल कुर्सियां बनाई गई है सीमेंट से इसका ग्रीन कलर है यह ऑरेंज कलर है।

एन ऊपर की ओर गेट के ऊपर की ओर बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई है तीन मूर्तियां बनी हुई है लेफ्ट साइड में बहुत सारे आदमी है बल्लून है |